नॉनवेज की विभिन्न डिश रखी गई है।

जो पेस्ट आदि रखा गया है।

यह तस्वीर एक योगा कक्षा की है।

बहोत सारे रंग बिरंगे फूल पीला संतरा सफेद लाल है।

ए_टी_एम में कुछ लोग आवा जाहि कर रहे हैं तथा गाड़ी के पा--

साड़ी तथा जूते की दुकान है।

यह हल्के ग्रे रंग की है जो चमक रही है वह पूरी तरीके से नई गाड़ी है।

यह एक ढाबे की तस्वीर है।

यह धमतरी के गंगरेल बांध की तस्वीर है जिसके पीछे ओना कोना का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है।

अपनी स्कूल ड्रेस में है तो शिक्षक इन्हें उपदेश दे रहे हैं।

उनके आस पास भी बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं।

इस जिम मे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें डेडीकेशन लिखा हुआ है डेडीकेशन मतलब उस काम में करने की लगन।

चूड़ीदार कपड़े का कुर्ता तथा नीचे धोती पहना हुआ है जो की एक पारंपरिक नृत्य को निभा रहा है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है जो कि फील हाल के लिए--

एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कुर्सी भी रखा हुआ है।

टेबल भी क्रीम कलर का है जिन पर नमक की डिब्बी टिशु चम्मच तथा नमक रखे हुए हैं।